फ्रूट की दुकाने है जहाँ पर कैरट रखे हुए है बहुत सारे जिसमे एप्पल और--

ये डाक घर है और इसमे रेड कलर की पेटी टंगी हुई है और जो दीवाल पर जो वह लटका है।

मैदान के आइट साइड मे पेड़ लगे है जिनकी हरी हरी पत्तीया दिखाई दे रही है ऊपर सफेद आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर सीलिंग लगी हुई है सीलिंग के सामने का गेट दिखाई दे रहा है सीलिंग पिंक और रेड कलर की लगी हुई है।

नीचे जो सीलिंग के नीचे का कलर है वो भी पिंक और रेड दिखाई दे रहा है बहुत सारी चेयर रखी हुई है साइड में पेड़ लगा हुआ--

फव्वारा दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई देर रहा है हरे- हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

बहुत बड़ा मॉल है मॉल के काउंटर दिखाई दे रहे है जो की कांच के है बहुत सारे सामान दिखाई दे रहा है।

डबल स्टोरी दिखाई दे रही है कांच का टेबल रखा हुआ है गमले रखे हुए है गमले मे हरे- हरे पोधे नजर आ रहे है कुछ लोग ऊपर खड़े हुए है।

एकदम सुनसान दिखाइ दे रहा है पेड़ फ़वारें और आसमान के अलावा कोई व्यक्ति--

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है जिसमे से तीन आदमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे उन्होंने सफेद कलर की शॉर्ट --